कुछ निचे में बाइक रखा है बदल बालू और व्हाइट दिख रहा है कला दिख रहा है ।

यहां पर एक मंदिर दिख रहा है और कुछ बहुत बड़ा -बड़ा स पठार भी है बीच में यहां पर रैलिंग लगा कुछ लोग दिख रहे हैं और पहाड़ दिख रहा है पठार है बहुत ह पेड़ है ।

यहां पर एक बहुत ही बाद स मंदिर दिख रहा है ।

यहां पर इकेरेयम रखने योलि बहुत सारी फ्रीज़ेड राखी है इकेकरें का फोटो छपवा है उसके अंदर इकेकरेयम भी रखा हुआ है सामन एक जैसा बाना है|

बड़ा सा द्वार गेट जैसा दिखरा है बहुत बड़ा सा हैं बहुत डिज़ाइन से बना हैं फूल फूल ऊपर में बहुत सारे बड़ा अच्छा लग रहा है साइड में बहुत सारी सारे हरे हरे गासे लगे हुए हैं।

यहां पर एक मस्जिद जैसा दिख रहा है पूरा वाइट कलर का पेंट किया गया है साइड में एक वाइट--

वय बहुत सारे रेड कलर के चेयर लगे हुवे हैं और यहाँ पे बहुत सारे रेड कलर का चेयर लगा हैं।

यहाँ पर एक मस्जिद दिखरा ह जिसमें बहुत ही डिजाइनिंग की गई है ज वाइट ग्रीन--